यहां कोईछ मिठाई दिखाई दे रही है और--

यहां एक महात्मा बुद्ध की मूर्ति दिखाई दे रही--

कुछ डब्बे दिखाई दे रहे हैं।

है बहुत दूर एक इंसान दिखाई दे रहा है।

यह एक कंपनी दिखाई दे रही है।

बहुत बड़ा बैनर लगा--

बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

और कुछ घास उगी हुई दिख रही--

और कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

कुछ पेर पौधे दिखाई--

यहां कुछ टमाटर दिखाई दे रहे हैं।

है जहां पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

स्टेट बैंक दिखाई दे रहा है जहां पर बहोत से लोग दिखाई दे रहे--

बहोत सी दवाईयां दिखाई दे रही--

यह एक जिम दिखाई दे रहा--

जिस पर बहोत सी ट्राफियां --

है जो नीले कलर का दिख रहा है।

दिखाई दे रहे हैं और--

यहां पर एक मिरर दिखाई दे रहा है।

कुछ चेयर और टेबल दिखाई दे रहे हैं और जग भी।

यहां एक बोट पर बहोत से लोग--

यहां एक रोड दिखाई दे रहा--

और पीछे बहुत बड़ा बेड दिखाई दे रहा है।

लोग शेविंग कर रहे--

है एक नीला आसमान दिखाई--

विंडोज़ दिखाई दे रही है।